ये एक रेड कलर का बिल्डिंग लग रहा है।

जिसमें बताया जा रहा है कि स्कूल का नाम राष्ट्र--

और लाल और पीले कलर का है।

जो दिखने में काफी खूबसूरत लग रहे हैं पीछे एक ट्रांसफार्मर भी है।

ये एक पार्क का फोटो है जहां पर कुछ लोग बैठे हुए है।

पार्क का घास हरे हरे देख रहे है।

गुंबज काफी ऊंचा दिख रहा है।

और लग यहां बत्तियां लगी हुई है।

और लाइट काफी ब्राइट दिख रही है इसमें।

और दो बड़े-बड़े लोहे के ड्रम है।

जहाँ पे दो लड़के एक दौड़ने वाले पर चल रहे हैं एक --

ये एक ब्रिज का फोटो है जो नदी के ऊपर बनी हुई है।

पुल के दोनों साइड काफी सारे पेड बगात दिख रहे है।

एक थेले पे मछली दिख रही है जो कि सार्क है।

पीछे येलो कलर की ऑटो दिख रहे है।

ऑटो चलती हुई है एक आदमी कैमरे से मछली का फोटो ले रहा है।

डांस रूम में चेयर है लक पीछे में।

यह किसी ऑफिस का फोटो लग रहा है जहां बहुत सारे चेयर लगे हुए है।

एक आदमी ने हाथ में फोन पकड़ रखा है।

जो काफी बड़ा दिखने में लग रहा है।

काउंटर हमें ऑरेंज कलर का दिख रहा है ऊपर लाइटें लगी हुई है।

ये एक डांस स्टूडियो का फोटो दिख रहाहै।

कुछ लड़के हैं डांस स्टूडियो के नीचे बात करते हुए--

जैकेट्स हैं रेक पे बहुत सारे कपड़े रखे हुए है।

जो किसी पहाड़ पे दिख रहा है मुझे क्योंकि नीचे बहुत--

यहां चार स्कूल के बच्चियां है।

यह एक होटल का कमरा दिख रहा है।

किनारे में एक अलमीरा है ए_सी लगी हुई है।

यह एक बागान का फोटो है।

ये एक पेट्रोल पंप का फोटो दिख रहा है।

एक बारकोड का फोटो दिख रहा है जो पेटीएम का है।

पंख बना हुआ है और कुछ--

इसमें एक शॉप है शॉप का नाम --

पार्क में बहुत सारे लाइटें लगी हुई है।

जहां पे एक व्यक्ति या महिला--

यह एक फर्नीचर की दुकान की फोटो है।

एक स्टैंड लगा हुआ है वहां पे तस्वीरें दिख रही है।

यह किसी तालाब का फोटो दिख रहा है।

जो चारों तरफ वृक्षों से घिरा हुआ है।

छोटे भी हैं कुछ वृक्ष बड़े भी हैं।

और एक मिट्टी को समतल करने वाली मशीनें दिख रही है।

यह एक मीटिंग हॉल की फोटो है।

ऊपर में पंखा भी चल रहा है।

दो रैक हैं दो अलमीरा है।

बहुत सारी छोटी-छोटी बत्तियां जल रही है।

यहां पे कहीं पे कॉपी दिख रहा है।

दीपऔर मोमबत्तियां जला रहे हैं।

पेट्रोल पंप का नाम एच_पी बता रहा है।

यह एक होटल की तस्वीर है।

और टेबल लगाए हुए हैं।

और पीछे बहुत सारे बड़े वृक्ष हैं।

जानवरों के पुतले भी नजर आ रहे हैं।

जहां पर बहुत सारी बत्तियां जला रखी--

पीछे दो बड़ी सी बत्तियां भी नजर आ रही है।

रिसेप्शंस के पीछे रूबन लिखा हुआ दिख रहा है।

यह एक कैफे की तस्वीर नजर आ रही है ।

सिनेमा हॉल की तस्वीर लग रही है।

जहां पे लिखा है मोना सत्तर एम_एम --

कुछ लोग आते हुए नजर आ रहे हैं कुछ लोग जाते हुए --

सलून सामने की तरफ लिखा हुआ है।

बाहर की ओर कुछ कुर्सियां लगी हैं।

यह एक पार्किंग की तस्वीर है।

बैठने के लिए कुर्सी भी है।

पेट्रोल पंप की तस्वीर नजर आ रही है।

एक ऑफिस दिख रहा है जिसमें--

और शटर है तीन इसमें--

यहां पे दो पंखे दिख रहे हैं।

करीबकई लोग कतार बद्ध खड़े हैं।

किनारे में बहुत सारे बसेस लगे हुए हैं।

उसके दूसरे साइड दो वृक्ष दिख रहे हैं।

लगती है हाथ से बनाई हुई।

खेत का मैदान दिख रहा है जिसमें कुछ फसल शायद लगी हुई हैं।

और पीछे की तरफपहाड़ियां हैं।

जहां पे दो झूले बच्चों को झूलने के लिए हैं बाकी कुछ--

बच्चों के खेलने वाली साइकिल रखी हुई है।

पीछे की तरफ और भी बच्चों का खिलौने हैं।

उसके बगल में बिजली के तार--

दिख रहे हैं कुछ बड़े-बड़े वृक्ष भी --

छोटे-छोटे पौधे भी यहां दिख रहे--

फुटबॉल नजर आ रहा है।

बगान में बहुत बड़ेबड़ेवृक्ष हैं।

इस मंदिर के पंडाल के आगे--

सुंदर सी बत्तियां चल रही हैं।

जो दिखने मेंकाफी सुंदर--

बैट पे सभी कंपनियों का नाम दर्ज है।

एक पेट्रोल पंप की तस्वीर--